बहोत सारी चेयर रखी हुई है।

जो बीच बाजार में है यहां एक--

ऑरेंज कलर का मंदिर हैं और बहोत सारे बड़ी बिल्डिंग हैं।

यहां बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

जो एक घर के गेट के सामने खड़े हुए है और एक फूलों--

और यहां पे लाल कलर की चमकती हुई लाइट लगी हुई है।

यहां एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी--

यह दुकान में एक बल्ब लगा हुआ है।

और इनके पीछे बहुत सारे बिजली के तार लगे हुए हैं।

झरने में बहोत सारे लोग नहाने आए हुए है।

बहोत ही रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।